गांव में कैसे पानी भरा भरकर रखा हुआ है पानी भरा रखा हैं ये दीदी यहाँ पर स्कूटी में अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा रही है यह रायगढ़ का नजारा है।

ये रायगढ़ का पेट्रोल पंप है जिसका नाम है इंडियन ऑयल पैट इंडियन ऑयल ये रायगढ़ जो की रायगढ़ में स्थित है यह देखिए शाम का नजारा है कितना अच्छा मौसम दिख रहा है तेजी की बारिश होने--

यह देखिए ये जो ये रायगढ़ ये रायगढ़ का पार्क है इस पार्क के सामने ये देखिए किसी का होटल वगैरा है यह इस होटल का नजारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये सामने ये ग्राउंड है।

बाइक है यहाँ पर यह पेट्रोल भर रहे है लाइट जल रही है और काफी शांत अच्छा माहौल है।

इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ से यह नदी बहती होगी यहाँ से यह पानी का बहा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है इस पहाड़ पर हल्की-हल्की सी घास है क्योंकि --

ये देखिये ये जो शॉप दिख रही हैं वो रायगढ की शॉप हैं ये देखिये ये ऐसा नज़र आ रहा हैं ये रायगढ की बहोत ही बड़ी शॉप हैं यहाँ पे दुल्हन साड़ी --

यह देखिए यह जो बिल्डिंग है यह एक ऑफिस है यहाँ पे लोग यह ऑफिस है यहाँ पे सेल्स वगैरा होती है किसी चीज की यह जो ऑफिस है वह रायगढ़ का ऑफिस है जहाँ यह देखिए महिला किसी काम के लिए इस ऑफिस में जा रही होगी।